यह एक टेंम्पो स्टैंड का फोटो दिखाया जा रहा है।

प्रकार के पंखे भी लगाए गए यहां पे।

और यहाँ पे जॉकी कंपनी का भी कपड़ा रखा गया है यहाँ पर तरह-तरह केपैंट मिलते हैं।

बहुत मेहनत लगे हुए हैं और इसे सजाने में भी बहुत मेहनत लगे हुए --

यह एक घर का फोटो दिखाया जा रहा है।

मेहनत लगे होंगे और घर के आगे बालकनी रखने से और भी अच्छे लग रहे है घर।

एक भी नहीं लगेंगे इसलिए यह आदमी --

बहोत सारे औरत लड़की जाते हैं मनीहारी के सामान खरीदने के लिए यहां के --

हर प्रकार के कपड़े मिलते हैं और बहुत आदमी --

कपड़े मिलते हैं यहाँ पे तरह-तरह के जींस मिलते हैं जैसे स्पार --

और इस नदी का पानी बहुत ही साफा है और यहां पे बहुत सारी --

पढ़ने के लिए जाते हैं और यहाँ पर टेंन क्लास ट्वेल्भ क्लास की पढ़ाई होती है।

जो चाट देखने में बहोत ही स्वादिष्ट लग रहा है और इसे खाने में भी बहोत स्वादिष्ट लगता है।

यह एक पंडाल का फोटो दिखाया गया है।

होटल का दिखाया गया है और इस होटल का नाम --

गार्डन होटल है और यहाँ पे बहुत सारा आदमी जाते हैं।

जिसके कारण से यह देखने में अच्छा लग रहा है।

और यहां पे रेलवे पटरी का फोटो है यह।